इस तस्वीर में मुझे ऐसा नजर आ रहा है की मछली बेच रहा है वगैरा वगैरा।

और जो दुकान मालिक है वह तो एक औरत है एक लड़की है बूढ़ी नू--

मे उसके बाद इंसान लोग भी जा रहा है और साथ ही साथ में ढेर सारा दुकान वगैरा बढ़ती है साइड साइड रोड साइड रोड साइड में।

अलग अलग किसिम किसिम का उसके बाहर नीचे में एक लाइट बल्ब का लाइन में रखा हुआ है।

और इस डेकोरेशन ब्लू कलर वाइट कलर और अलग अलग कीसिम कीसिम कलर से--

इस तस्वीर में मुझे ऐसा नजर आ रहा है एक लड़का जो जिम कर रहा है और उसका पीछे भी एक लड़का है।

वो ठीक से जिम करके ठीक मेहनत करते हुए। फिर वो लड़का जूता पहन के है और एक लांग पैंट ब्लैक कलर का और एक टी-शर्ट ब्लैक कलर का वो पहन के है।

व काफी सारे उम् द अअ ट्रक्स है उसके बाद जे_सी_बी वगैरा है।

बिल्डिंग्स ढ़ेर सारा है उसका बहुत पीछे में भी ढेर सारा बिल्डिंग्स है पहाड़ देखने को मिल रहा है बढ़िया सा।

रखा है रखा है मतलब बना के है।

और पीछे में बिल्डिंग्स वगैरा है।

और अंदर में टेबल वगैरा बहोत ढेर सारा फर्नीचर रखा हुआ है लाइक टेबल चेयर चेयर भी अलग अलग किसीम का रखा हुआ है सोफा सेट वाला और मतलब नरम नरम वाला।

और एक काउंटर इधर कुछ हैं इसपे कुछ ढेर सारा कुछ इंजन ऑयल वैगरा रखा हुआ है और कैलकुलेटर भी।

सारे ऐसा कुछ बहुत ढेर सारे जूस वगैरा है।

इस तस्वीर में ऐसा नजर आ रहा है कि--

जिस जो गाड़ी खरीदकर वो लोग सेलिब्रेट कर रहा है बढ़िया से।

काफी सारा इंसान खड़ा हुआ हे हुआ है उसके बाद बढ़िया से डेकोरेट वगैरा बैलून वगैरा से डेकोरेट कर रखा है।

ये कई सारे इंसान लोग भी है फादर के आस पास।

और पीछे में एक जीसस क्राइस्ट का फोटो और--

आ मेरी का फोटो वगैर लगा के है और--

बढ़िया से डेकोरेट पत्थर से करके रखा है। पत्थर से रोड साइड रोड साइड सब कलर करके रखा हुआ है।

और सामने एक पीपल भी ब्लू कलर का लगाके हैं और वहां मे एक--

और ऊपर में कुछ मसाला अगैरा वगैरा लगा के रखा हुआ है।

और एक वॉल क्लॉक है और एक पॉइंट है जहां पर अ ये काउंटर धरा --

लोग जी इंजॉय कर रहा है खाना वाना खा रहा है इस ग्राउंड में फील्ड में।